इसने व्हाइट टोपी पहनी हुई है।

साथ में ही पीछे की ओर--

जिसमें रेड कलर ग्रीन कलर की बिल्डिंग्स बनी हुई--

यहां पर हमें दिखाई दे रही है बड़ी सी बिल्डिंग ।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

सामने व्यक्ति इसकी वॉशिंग या सर्विस कर रहा है।

यहां पर हमें दिखाई दे रहा है बहुत सारा ब्लू एरिया ।

और दीवारों पर हमें वाइट पेंट दिख रहा है।

सामने बड़े-बड़े ग्रीन कलर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

जो कि यहां ग्रीन कलर का है।

पीछे व्हाइट और ब्लैक कलर की--

जो एक ग्राउंड में इकठ्ठा है।

कुछ छत में रेड कलर दिख रहा है।